और छत में एक पंखा भी लगा हुआ है।

उन पर लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं।

की साइड मशीन लगी हुई होगी और यहां पर बहुत सारा आदमी कोई धोती कुर्ते कच्छे बनियान में है।

यह एक बहुत बड़ा मैदान है।

और दो क कमरे में दो कट्टे अनाज के रखे हुए हैं।

यह एक सीटी है सिटी में रूम बने हुए हैं।

और उसपर लाल कलर का रंग लगा है।

रूम के अंदर यह गोदरेज अलमारी रखी है।

इसमें हले पीले रंग के फूल रखे हुए हैं।